उसके आसपास कुछ कुर्सी रखे गए हैं जो ब्लैक एंड रेड कलर में है।

यहां पे शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पे दो शटर लगाए गए हैं।

और सामने में कुछ पेंटिंग दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे में छोटे छोटे पौधे और कुछ ईंटे दिखाई दे रहे हैं।

हां इसके बगल में एक नाली जैसा बीच में कुछ बनाया हुआ है।

इसने व्हाइट कलर के कपडे पहने हुए है।

और इसके सामने में एक गेट दिखाई दे रहा है जो खुला है।

ऊपर में पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

रूम दिखाई दे रहा है।

और यहां पर ढेर सारे रैक बनाए हुए नजर आ रहे हैं।

उसके पास प्युरीफायर लगा हुआ नजर आ रहा है।

उसमें कुछ ग्रिल भी दिखाई दे रहे हैं।

ड्राइंग कंपटीशन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ लाल कुछ ब्राउन कुछ येलो कलर के--

और यहां पे एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

और नीचे में कुछ हरे हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक प्रिंटिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

और बाहर में ढेर सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

और एक बाहर में शटर दिखाई दे रहा है।

उसके आसपास ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं।

कुछ टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं जिससे पास से रोशनी आती भी नजर आ रही है।

यहां पे ढेर सारे पत्थर नज़र नज़र आ रहे हैं।

और यहां पे एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई दे रहा है।

जो एक तौली से कवर करके रखा गया है।

एक कुर्सी दिखाई दे रही है जो छोटी सी है।

यहां पे कुछ हॉर्लिक्स कंप्लेन दिखाई दे रहे हैं।

उदय इंजीनियरिंग वर्क दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ खिड़कियां लगी हुई नजर आ रही है।

और यहां पे सामने में स्टैंड बनाया गया है।

और यहां पे ढेर सारे लोग टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पर शीशे के ग्लास पे यह सब केक रखे गए हैं जिस पे थोड़ी सी लाइट जलती हुई भी नजर आ रही है।

कपड़े भी है कुछ हेलमेट भी दिखाई दे रहे हैं।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

एक कार दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।